चित्र में हमे एक गेरिज दिखाई पड़ रहा है जिसमे की ऊपर पंखा लगा हुआ है और इसमे हमे कुछ तीन गाड़िया तीन कारे दिखाई पड़ रही है।

इस ट्रेन की दो खिड़कियां बंद है और एक खिड़की खुली हुई है और एक-दो दरवाजा इसका बंद है और इस ट्रेन के सामने ही जस्ट एक हमें पटरी भी दिखाई पड़ रही है जिसके जिसपे काफी सारी गिट्टियां है।

और यहाँ हमे पुलिस वाले भी दिखाई पर रहे है और ट्रेन के आस-पास हमे कुछ लोग आते-जाते हुए भी दिखाई दे रहे है कुछ गमले भी यहाँ पे रखे हुए है जो की हरे-भरे है।

इस चित्र में हमे तांजा हूर शिवाजी की मूर्ति दिखाई पड़ रही है जिनके सर पर काफी ही अच्छा सुंदर सा मुकुट है गले में माला है।

हार है और जिनके काफी सारे हाथ भी और पैर भी दिखाए गए हैं काफी ही सुंदर और अच्छी मूर्ति दिखाई पड़ रही है।

और साथ ही साथ यहां पे काफी सारे पेड़-पौधे भी लगे हुए है बाहर काफी सारे बड़े पेड़-पौधे है और अंदर छोटे-छोटे एक आदमी जो है यहां ग्राउन्ड मे खड़ा हुआ है और एक जो है पूर्णिया लिखा हुआ है वहां पे खड़ा है।

चित्र में हमे एक मस्जिद दिखाई पड़ रही है जो की सफेद कलर और नीले कलर से पुता हुआ है जिसमे की काफी सारी खिड़कियां है और एक दरवाजा भी है।

साथ ही साथ यहाँ कुछ गमले भी रखे हुए हैं कुछ पेड़-पौधे लगे हुए हैं और कुछ गमले लगे हुए हैं और इसी के बाहर हमें एक सड़क सी दिखाई दे रही है।